यह फोटो टेस्ट अब ऑल --

विदेशी मदिरा दुकान का है।

यह फोटो शादी के अवैन्यू का है।

जहां पर एक घर बना हुआ है।

यहां पर अभी कोई भी नहीं हैं।

यह फोटो एक शादी के अवेन्यु का दिखाई दे रहा है।

यहां एक बगीचे का फोटो है।

इसकी स्थापना सन् उन्नीस थर्टी थ्री में--

की बहोत सारी सब्जियां दिखाई दे रही है।

किसी ने यहां पर फोटो खींचा है।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं।